इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी लेडीजे और जेंट्स बैठे हुए है

एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है जो की एक छोटा सा सफेद फूल दिखा रहा है।

जोकि-जोकि ग्रीन कलर का हाफ लोअर और एक व्हाइट शर्ट पहने हुए हैं और पेड़ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक केक दिखाई दो केक दिखाई दे रहें हैं एक केक पिंक कलर का ऊपर व्हाइट कलर के फूल हैं स्ट्रॉबेरी रखा हुआ हैएक येलो कलर का है।

दो आदमी अंदर दिखाई दे रहा है तीन आदमी बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति ने काला बैग टांगा हुआ है। पीछे --

मे मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसपे लिखा हुआ है ए.टी.एम. बाहर एक कार रखी है आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है टिने रखी है।